इस चित्र में आप एक इमारत को देख सकते है जो बहुत नवी-नवी रही है।

जो ह आ काले रंग की है और उसके ऊपर सिटी कार्ट करके लिखा है उसके नीचे ही मेंस वेयर लेडिस वेयर किड्स वेयर करके लिखा हुआ है उसके नीचे ही पिज्जा हर्ट करके हीं लिखा हुआ है।

इस चित्र में आप एक नदी को देख सकते है जहाँ नदी के एक किनारे बहुत सारी हरियाली भी है।

उसके नीचे ही दो दुकाने हैं बाबा शिवर कॉर्नर करके उसके पास ही एयरटेल फोर. जी करके एक दुकान है खुला आसमान है और पेड़ है।

कैफै करके और उसके सामने बोहोत पौधे भी रखे हुए है और कुर्सियाँ मेज भी रखा हुआ है और रंग बिरंगी लाइटे भी चल रही है।